और एक पर्दा भी खींचा हुआ है। उसके परदे के नीचे से रास्ता बना हुआ है के वह अपने मकान के अंदर आसानी से बैठ सके।

यहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और यहाँ दुकानदार कपड़े बेचता हुआ दिखाई दे रहा है।

ये जंगली जानवर है। उसके चारों तरफ से जाली लगी हुई है के जानवर बाहर न निकल पाए।